जिसमें लाइटिंग लगी है पुरे पूरी बिल्डिंग पर।

यहाँ पर हमे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

पौधे लगे हुए दिख रहे हैं। पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और सामने हमे यहाँ पर घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

जोकि बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे यहाँ पर मछली बने हुए दिखाई दे रही है। मोर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है क्लास रूम ।